इस दुकान के बाहर दोनों साइड लेफ्ट और राइट बैनर लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है जो काफी बड़ा है।

पेड़ पौधे वी दिख रहें हैं।

इस फोटो में काफी हरे भरे पेड देख रहे है।

यह फोटो एक बड़ी सब्जीमंडी का है।

यह फोटो किसी कमरे का है जिसमें--